यह सरस्वती पूजा का चित्र है यहां एक मयूर है हंस है सरस्वती माता गिटार लेकर खड़ी है बैठी हुई है बहुत बढ़िया मूर्ति है बहुत अति सुंदर मूर्ति है सरस्वती पूजा का मूर्ति है जो की देखने में बहुत सुंदर है।

तुरंत का तुरंत खरीद लिए हैं बहुत दिखने में सुन्दर सरस्वती माता का मूर्ति जो की छब्बीस जनवरी को सरस्वती पूजा होने जा रहा है बहुत मज़ेदार है।

वाह! ये तो मिक्सचर है बालू गिट्टी सीमेंट पानी सभी को मिला कर के आप घर डलाई कर सकते हैं मिक्सचर मशीन का है।